इस तस्वीर मुझे अंब्रेला भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक जग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे झंडे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक नदी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे ट्रेडमिल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ लोग नजर आ रहा है वो सभी काम कर रहे हैं।

घर का छत टीना से बना हुआ है।

इस ताबजी में मुझे तामुल का पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे डॉक्टर्स भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी गराज या कार वाश कि है।

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल भी नजर आ रहा है टेबल ग्लास और बंबू का बना हुआ है।

वॉल का कलर है ग्रीन पिंक और ब्राउन --

सीलिंग पर एल_इ_डी लाइट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे रेड कारपेट भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चिकेन का लेग पीस नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे नदी नजर आ रहा है।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

तस्वीर में मुझे एक कार्पेट भी नजर आ रहा है फ्लोर टाइल्स का बना हुआ हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे फूल भी नजर आ रहा है।

पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।